इस तस्वीर में एक बोर्ड दिख रहा है सफ़ेद रंग का उसपे लाल रंग में अंग्रेजी में एयरटेल लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में ऊपर हरे-भरे पेड़ दिख रहे हैं और बहुत सारे लोग खड़े हुए दिख रहे हैं जिसमे कुछ बूढ़े भी हैं कुछ पुरुष भी हैं कुछ महिलाएं भी है और कुछ बच्चे भी हैं।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

इस तस्वीर इस तस्वीर मे कुछ टी-शर्टे टंगी हुई है हैंगर के ऊपर ऊपर से उनके ऊपर लाइट आ रही है।

इस तस्वीर में आसमान दिख रहा है एक बड़ी झील दिख रही है उस पानी के ऊपर हरे-भरे पौधे दिख रहे हैं दो चट्टानें दिख रही है।

इस तस्वीर मे आसमान दिख रहा है थोड़ा पानी दिख रहा है और मैदान दिख रहा है और दो नाव दिख रही है और पर्वत दिख रहा है।